यहाँ पर लग रहा है किसी की शादी हो रही है जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है।

और काफी अच्छा जगह है यहां पर अपने अपने अनुसार अगर रहने की इच्छा हो तो इंसान रहकर कुछ दिन अपने घर की ओर जा सकता है या......